पब्लिक शो लिखा हुआ है और ये यहां पे--

शैंपू तेल वगैरा भी रखे हुए हैं।

सफेद रंग की शर्ट पहन रखी है और एक आदमी ने लाल रंग के कपड़े--

यहां पे देख सकते हो यह बिजली का खंबा दिख रहा है और ये --

ये यहां पे देख सकते हो यहा पे--